काफी खूबसूरत नजर आ रहा है यहां। इस बोट में कई लोग बैठे जिनमें कुछ--

मिलते हैं और यहां पर पेन्स वगैरा हैं जो की फ्लेर कंपनी की--

और वाइट कलर से बनाई जा रही है यहां पर कुछ लड़कियों ने मास्क लगाया है।

है यहां पर एक बाइक है और यहां पर कुछ सामान--

यहाँ पर फुटवियर्स भीं हैं जो की दम मूल पली--

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं यहां पर काफी हरियाली हैं यहां पर एवरग्रीन के छोटे छोटे--

यह तस्वीर एक रूम की है जहां पर एक बेड और दो पिलोज लगे हुए हैं।

जिसका कलर रेड कलर है यहां पर कॉफी मशीन भी है।

ये तस्वीर एक आइसक्रीम शॉप की है।

ये तस्वीर एक रूम की हैं यहाँ पर एक बेड लगाया हैं जहाँ पर रेड कलर की दो पिलो और व्हाइट कलर की दो पिलो लगे हैं।

साइड मे यहां पर एक एल_सी_डी लगा हैं ऊपर यहां पर ब्राउन कलर का एक पंखा हैं।

आगे यहां पर एक बोर्ड हैं जिस पर वेलकम द स्मार्ट वर्कशॉप लिखा हैं।

यहां पर रिक्शा भी है आगे यहां पर कई सारे बाइकें हैं यहां पर एक आदमी--

और ब्लैक कलर के शूज लगाए हैं ऊपर यहां पर ऑरेंज और पर्पल कलर के गुब्बारे लगे हैं।

पानी का टैंक भी है जिस पर एक मग भी है और एक ग्लास भी है।

टाइल लगे हुए हैं जिनका कलर ब्राउन और व्हाइट है पीछे यहां पर एक और दरवाजा है यहां पर छत का कलर वाइट कलर हैं।